मूली है अरवी है ठीक है।

फोटो में एक लड़का बैठा है और बाकी लड़के खड़े हुए हैं।

और दिन का समय दिखाई दे रहा है।

हां जी तो ये एक स्प्लैश वॉटर पार्क होते है ना जो पानी वाले पार्क होते है कभी ना कभी तो आप गए होगे ठीक है गर्मियों में जाते है लोग।

अब इस फोटो में देखो सामने बोर्ड लगा है लिखा है अवन अवनीति--

इस फोटो में मुझे एक पेट्रोल पंप दिखाई दे रहा है।

ठीक है और आसपास घास और मिट्टी नजर आ रही है।

और ये लड़के यहां पर खेलते हुए दिखाई दे रहे है सभी लड़के हैं लड़कियां नहीं हैं यहां पर--

दिन का समय है देखो यहां पे काफी सारे न सामने--

घर भी दिखाई दे रहे हैं ठीक है।

और यहाँ पर एक बोर्ड और लगा हुआ दिखाई दे रहा हैं जिसपे लिखा हैं सहजता से संपूर्ण बँकिंग --

इस फोटो में सामने लिखा है वी टक फोम ठीक है साइड में भी लिखा है वी_टी_एफ --

यानी की फुल फॉर्म है बीटेक फॉर्म ।

टो में किचन दिखाई दे रहा है यहां पर एक चूल्हा है जोकि दो गैस वाला चूल्हा है नीचे--

इस फोटो में एक होटल के अंदर का फोटो है ये।

दिन का समय दिखाई दे रहा है।

है और पेड़ है एक झूला दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में स्टेशनरी की दुकान दिखाई दे रही है। यहां पर काफी सारे पेंस है बुक्स है बैग है ठीक है।

और जितना भी मतलब टोटल जितना भी स्टेशनरी का समान होता है ना कलर्स हो गए पेन हो गए।

फर्श पे भी टाईल लगी हुई है पौधे दिखाई दे रहे हैं छोटे छोटे ठीक है।

इस फोटो में यहां पर पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं बड़े बड़े पत्थर दिखाई दे रहे हैं एक पक्षी बैठा हुआ दिखाई दे रहा है और--

सामने लिखा है भोला जूस कॉर्नर नीचे लिखा है अमूल पिज़्ज़ा आइसक्रीम ठीक है।

और यहा पर काफी सारी अ चीजे दिखाई दे रही है जैसे की पानी की टंकी दिखाई दे रही है लड़का खड़ा दिखाई दे रहा है।